जिसमें बहोत लंबा एक टेबल लगा हुआ है।

यहां पे एक लाल कलर का बोर्ड टंगा हुआ है जिसपे मद्धेशिया होटल लिखा हुआ है।